ब्रांच है और काफी ये चर्चित ब्रांच है। यहाँ पर खूब सारा पैसा जमा होता है। ये --

अ जादूगरी लिखा हुआ है। मोटरसाइकिल मौत का कुआँ है।

पोस्ट ऑफिस है। यहाँ लोग पैसा जमा करते हैं। काफी अच्छा है। यहाँ काफी भीड़ होता है।